ऊपर सेल पर एक कागज का डब्बा भी है जिस पर के पोलो लिखा हुआ है।

इसने ब्लू कलर की शर्ट और पिंक कलर का मफलर लगाया हुआ है सामने आसमान भी दिख रहा है जिसपे बादल छाए हुए हैं।

बैटरीज परफॉर्मेंस गारंटीड भी लिखा हुआ है इसके सामने दो मोटरसाइकिले भी पार्क की गई--

और कुछ झाड़ू प्लास्टिक की पाइपे रस्सी की गुछींया व्हाइट सीमेंट और इसमें काला रंग भी देखे जा--

खूबसूरत डेकोरेशन और लाइटनिंग भी की गई है इसमें कुछ टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई है और कुछ औरतें उस एक टेबल पे जैसे कुछ खा रही है।

उनका फेस ब्लर आ रहा है इसमें इंटीरियर में भी सीलिंग में ब्लैक कलर के इंटीरियर और सीलिंग की गई है।